यहाँ पे देखिये दुकान है यहाँ पे किराना सामान सब जो चाहिए देखिये आलू रखा है मूली र--

यहाँ पे लाल रंग का ओढ़नी जैसे कुछ रखे हुए हैं जो उस कुछ महिलाओं लोग बच्चे लोग बैठे हुए हैं। कुछ खड़े हुए हैं जो देखने में बहोत ही अच्छा बहोत ही खूबसूरत लग रहे --